यहाँ पे सामने कुछ लोग दिखाई दे रहै है और यहाँ पे देखने से पता चलता है कोई शादी समारोह--

यह कोई फंक्शन है और यहाँ पे सामने एक भगवान जी की मूर्ति बानी हुई है यह टैंट वगेरह भी लग हुआ है। और यहाँ पे--

फूलो की माला फूल वगेरह भी लगे हुए है सामने से और यहाँ पे अंदर जाने के लिए रास्ता--

और यहाँ पे साइड से विंडोज भी है और विंडोज के बाहर पेड़ भी दिख रहे हैं जिनमें ग्रीन कलर में पत्ते हैं और यहाँ पे नीचे भी कुछ सामान वगैरा रखा हुआ है।

और यहाँ पे एक बैंक है और यहाँ पे ऊपर बोर्ड लगा है जिसमे लिखा भी हुआ है।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

यहां पे सामने कुछ लोग खड़े हुए है यहां पे बाइक भी खड़ी हुई है जिनका ब्लैक कलर सामने बिल्डिंग बनी हुई है और सामने बलूनस भी लगे हुए है जिनमे वाइट कलर और ब्लू कलर और यहां पे--

यहाँ पे सामने रोड बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पे ऑटो खड़ा हुआ है साईकल खड़ी हुई है बाइक भी है और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है बड़ा सा यहाँ पे कुछ बिल्डिंग और घर वगेरह भी है यहाँ--

साइड में पेड़ भी दिख रहे रहे है और यहाँ पे रात है और ऊपर काले काले बादल दिखाई दे रहे रहे है।